यहा एक हात दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक कॉफ़ी का मग रखा हुआ है सामने एक छोटासा घर दिखाई दे रहा है घर के चारो और आस पास हरेभरे वृक्ष दिखाई दे रहे है।

यह एक ब्यूटी-पार्लर का दृश्य है जहाँ सामने बड़े-बड़े कांच के मिरर लगे हुए है और उसके आगे कुर्सियां रखी गई है। कुर्सियां ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है।

और एक छोटासा झूला दिखाई दे रहा है जो की पिले रंग का है बगीचे के पीछे एक घर दिखाई दे रहा है जिसका अभी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है और एक बिजली का खंबा भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक कमरा दिखाई दे रहा हैं जिसके अंदर एक ब्लैक कलर की टी_वी रखी हुई हैं सामने एक कुर्सी भी रखा हुआ हैं।

यह एक पुराने किले का दृश्य है जिसे संगमरमर से बनाया गया है किले के अंदर कुछ छोटी-छोटी कलाकृति की गई है लोगों के प्रतिमाएं बनाई गई है।